यहां पर लाल रंग की कुर्सी डली हुई है इंटे यहां पर बिछाई गई है बहुत--

कुछ सामान लेकर कागज लेकर यहां पर एक अंकल बैठे हैं जिसके आंख पे चश्मा लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर है ऑफिस ।

यहां पर एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें हर तरह के आइटम दिखाए गए है यहां पर बड़े बड़े--

वन सिक्स वन थ्री टू और ऐन्ड गिफ्ट आइटम भीं हमारे यहाँ पर मिलते हैं।

नीचे एक लाइटें लगी हुई है जो इसको बहोत ही अच्छा आकर्षक बना रही है रात का ये सीन है।

वेटरनिटी क्लीनिक है या कुत्तों का यो क्लीनिक है।

पर एक स्टील का बड़ा सा टंकी बनाए जा रही है और यहां पर काम वेल्डिंग का किया जा रहा है।

तेलों के यहां पर बड़े-बड़े कैन रखे हुए है यहां पर वैसलीन रखी हुई है यहां पर ईजी रखा हुआ हैं कपड़े साफ करने का।

लीड है और यह शीशे में देखकर अपनी फोटो खींच रहा है।